जैसा की देख पा रहे हैं एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है उस हॉल में बच्चे --

योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं एक टीचर भी दिखाई दे रहे हैं।

एक व्यक्ति बैठा दिखाई दे रहा है पीछे की दुकान में गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है और--

नदी का पानी हरा दिखाई दे रहा है |